जिस पर एक लैपटॉप पड़ा है।

वह दिल के अकार के पिल्लों पड़े हुए है कुछ बॉक्सेस भी है।

हमें दिखाई दे रहा है कि एक छोटी बच्ची फुटबॉल के साथ खेल रही है।

फूलों की मालाएं पड़ी हुई हैं ये बहोत ही सुंदर व अलग अलग प्रकार के फूल हैं।

ये एक दुकान का दृश्य है जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है।

गुलदस्ते पड़े हुए हैं जो रंग बिरंगे फूलों के हैं व एक बड़ी गेंदें के फूलों की माला है।

वे गुलाब के फूलों के ऊपर ड्रॉपलेट्स यानी की पानी की बूंदे --

टाइलें लगी हुई दिख रही हैं व पार्टीशन भी बने हुए हैं नीचे की तरफ एक घोड़ा --

हस्पताल बीकानेर लिखा हुआ है।

ये दृश्य एक मंदिर का दिखाया गया है जैसे बहोत ही खूबसूरत तरीके से --

जिसमें ग्रीन कलर की थैली है वह एक महिला ने लाल साड़ी पहनी है।

जीस पर डबल यू डबल यू डबल यू डॉट जाखड़ ट्रेवल्स डॉट कॉम लिखा है व उसके पास एक येलो ऑटो खड़ा है।

इस दृश्य के अंदर एक ज्वेलर्स की दुकान का दृश्य है जिसमें हमें बहोत सारी ज्वेलरी व --

दो महिलाएं डेक्स के ऊपर बैठी हुई हैं।

ये दृश्य एक दुकान के अंदर का है जिसके अंदर बहोत सारे खाद्य पदार्थ पड़े हुए हैं जैसे न्यूट्रिला --